ये सामान पंखे की तरह लग रहा है जिसकी बड़े-बड़े ब्लेड्स है।

और ये लकड़ी पर बैठे हुए हैं इनके बाजू ही एलोवेरा का पेड़ है पौधा है।

और इसमें चावल रखे हुए हैं और चम्मच रखे हुए हैं और मेज़ पर पानी का बोतल है।

चित्र में एक छोटी सी झोपड़ी जैसी दुकान दिख रही है।

इसने लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की टोपी लगाई हुई है। और पीछे पहाड़ों पर बड़े पेड़ लगे हैं।

बाजू भी छोटा सा तालाब है और कुछ बड़े पेड़ और लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ ठहरे हुए हैं।

एक जिम की है और यहां पर बहुत सारा जिम करने का सामान रखा हुआ है।

सामने एक लड़का ठहरा हुआ है जिसने चश्मा लगाया हुआ है और सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।